यह एक क्लासरूम है क्लासरूम काफी बड़ा है क्लासरूम में बच्चों के बैठने के लिए सीट्स काफी अच्छी है।

ऐसे स्विच बोर्ड वायर एल.ई.डी. बल्ब फैन इस प्रकार के सामान यहाँ पर उचित दामों में मिलते हैं।

पेट्रोल के साथ साथ यहा पर सीऐनजी गेस की भी सुविधा है।